एक ई रिक्शा है एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो की पहले के ऑटो रिक्शा के जगह पे आ गया है इसको चार्ज करके हम चला सकते है इससे प्रदूषण कम फैलेगा वातावरण में |

ये एक कॉलेज है एक ग्रेजुएशन कॉलेज यहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी बारहवी की पढाई के बाद तीन साल का ग्रेजुएशन करने के लिए आते है यहाँ अलग - अलग सब्जेक्ट की पढाई कराइ जाती है जैसे की --